इस तस्वीर में सामने एक चर्च नजर आ रहा है जीसके स् नीचे जमीन पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में सामने एक बहुत बड़ा-सा जगह नजर आ रहा है जहाँ पार्टी हो रहा है।

पार्टी का सभी इंतजाम रखा है। जैसे टेबल चेयर्स लाइट्स और भी बहोत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं। सामने स्टेज भी बना है जो सजा हुआ है।

इस तस्वीर मे सामने दूल्हा-दुल्हन दिखाई दे रहे हैं जो बैठे कर है और उसके बगल मे एक पंडित है जो शादी करवा रहा है। इसके पीछे बहोत सारे और भी लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में सामने एक शादी हॉल का तस्वीर है जहां सामने स्टेज में बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ।

उसके बगल में खड़ा व्यक्ति फोन चला रहा है जिसने सफेद शर्ट पहना है।

टेंट भी बना है टेंट ऊपर से सफेद रंग का है इसके साइड मे स्कूटी भी रखी हुई है।

जिनमें से कुछ महिला व्यक्ति बोट को चला रही है। यह एक नदी के ऊपर है।

इस तस्वीर में सामने एक लड़की दिखाई दे रही है जो डांस कर रही है। इसने नीचे घाँघरा पहना है ऊपर य ब्लैक कलर का टॉप पहना है।

इस सस्वीर में सामने तीन व्यक्ति नजर आ रहें हैं जो काम कर रहें हैं या ईटे सीमेंट को मिला रहें हैं ।